जिसमें सामने ही जाते ही जस्ट सामने ही जाते मंदिर बना हुआ है इसमे दिवारे हैं गेट है और झा पहाड़े बने हुए हैं पेड़ पोधे भी लगे हुए हैं जो कि बोहोत ही अच्छे और अद्भुत तरीके से बने हुए हैं।

यह एक बोहोत ही बड़ा पार्क है जिस पार्क मे काफी सारी चीज़े बनाई गई है बच्चो के लिए खेल कूद के लिए बोहोत ही सारी रनिंग पार्क वगेरा है यहाँ पर --

और यहाँ पर पास ही मे बोहोत अच्छी अच्छी चीज़े है। मार्केट वगेरा खुली हुई है जिससे बच्चे खरीद बहुत खुश रहते है।

ये एक बिल्डिंग के बाहर का व्यू बना रखा है और इस व्यू मे काफी सारी चीजें दिखाई दे रही है।

यहाँ पर बोहोत ही सारी कार्स वगैरह खड़ी है ओर पेड़-पोधे भी लगाए गए है यहाँ पर --

इस फ्रेम मे इस मंदिर के पास पेड़-पोधे लगाए गए है और बादल भी है और एक्स का निशान भी बना रखा है।